और हॉल में देख लीजिए तरह तरह की लाइटिंग है और इससे एक बहोत ज्यादा सुंदर लग रहा है आप खुद देख सकते है और यहां पे टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है।

यहां आप देख सकते हैं हमें एक है ना फोर व्हीलर दिखाई दे रही है जिसमें कि देख सकते है आप आगे का ढक्कन खोल रखा है और काफी सारे ऐसे--

और दो जेंट्स बाहर बैठे हैं एक मोबाइल देख रा है और उसके आस पास हम एक फोर व्हीलर भी नजर आ री है और कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रे है।

एक पेड़ है और आस पास हमें पानी की कैन दिखाई दे रही है और कुछ बाइक रखी हैं।

यहां पे बड़ा सारा एल_ई_डी लगा हुआ है उसमें गणेश जी की--

और बहोत ही प्यारे हैं सुंदर सुंदर हैं अलग अलग तरीके--

यहां हम देख सकते हैं एक छोटा सा घर बना हुआ है। घर के ऊपर दीवार पर आप देख सकते हैं प्लस का निशान है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें यहां पे शॉप दिखाई जा रही है जिसका नाम है शुद्ध खाएं स्वस्थ रहे और यहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा खाना मिलता है।

और कुछ यहां इधर साइड में खड़े है आप खुद देख स--

यहां देखिए हमें एक बहोत बड़ा गार्डन नजर आ रहा है गार्डन के आसपास काफी घर बने हुए हैं।

घर के आगे हम खुद देख पा रहे छोटे-छोटे पौधों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है और फोर व्हीलर खड़ी करने की भी काफी अच्छी फैसिलिटी है यहां पे पास ही यहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ भी है।

और आस पास हमें काफी रश देखने को मिल रहा है जैसे कि ऑटो बाइक्स स्कूटी उसके आस पास पब्लिक भी है।

हेयरकट बड़ा अजीब है आप खुद देख सकते हैं साइड से इसको एकदम गंजा सा कर रखा है।